लेडिस के पास में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो स्टील के दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेपर्स दिखाई दे रहें हैं पीछे की साइड मुझे ग्रीन कलर की दिवार दिखाई दे रही है जिस के ऊपर डेकोरेट किया गया है।

जो की मोबाइल पे बात कर रहा है | एक आदमी पीछे के साइड खड़ा हुआ है |

और तालाब के पास में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की ग्रीन कलर के हैं |

जिस का नाम एस.बी.आई. है | ऊपर की साइड एक ब्लू कलर का बैनर लगा हुआ है ज --

ऊपर के साइड मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने की साइड मुझे एक खंभा दिखाई दे रहा है।

पास ही मुझे थोड़ी-सी सड़क का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

जिसने ब्लू और वाइट टी-शर्ट पहना हुआ है।

पटरी के पास में काफी सारे छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए हैं।

लड़के के पीछे मुझे काफी मशीनस दिखाई दे रही है।

पीछे की साइड के एक बड़ा सा बॉल पड़ा हुआ है जो की ब्लू कलर का है।

साइड में मुझे डी.जे. दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ बच्चे डांस के परफॉमस दे रहें आं इसमें पीछे एक बैनर लगा हुआ है।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

ता कुछ है पीछे की साइड मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं।